लॉन्ड्री वाले की दुकान दिख रही है कुछ कपड़े टंगे हुए हैं एक आदमी खड़ा है|

आजू-बाजू बहोत सारी घास भी है|